एक बोर्ड भी टंगाया हुआ है जिसमें होम फूड लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे क्रिकेट बैट दिखाई दे रही है।

बहुत सारी खिड़कियां भी दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक केबिन दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे ऑटो रिक्शा दिखाई दे रही है।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

ग्लास भी दिखाई दे रही है।

सामने में एक बक्सा रखा हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे फ्राई राइस दिखाई दे रही है।

दो स्पून भी दिखाई दे रहे है।

अमूल कुल्फी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे एक खुला मैदान दिखाई दे रही है।

आसमान भी दिखाई दे रही है।